यह सिविल की ओ पैंट पहन रखी है और चैक की शर्ट पहनी हुई है और उसके ऊपर कोटि पहेनी हुई है और ये कोटि बहोत ही अच्छी लग रही है।